यह एक बिल्डिंग का तस्वीर है।

घर का रंग लाल है।

यह बेतला राष्ट्रीय उद्घान का तस्वीर है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधें हैं।

और कुछ ने लाल कुछ ने नीला--

यह एक क्लासरूम का तस्वीर है।

और यहां पे बैंच मिटी रंग के हैं।

यहां पे कुछ बुक कॉपीज भी दिख रही हैं।

यहां पे एक स्कूल बस लगा हुआ है।

और स्कूल अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है।

और इनका रंग मिट्टी है।

सामने एच_डी_एफ_सी बैंक का पोस्टर लगा हुआ है।

रिसेप्शन के आगे गेंदे के फूल के माला बना के सजाया गया है।

यहां पे एक सामने एक किराना दुकान है।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह कोई शादी का कार्यक्रम का तस्वीर है।

इसमें बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

यहां पे किसी दुकान के बाहर का तस्वीर है।

सामने रोड में एक बाइक और एक स्कूटी लगा है।

और बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है।

वह एक जंगल के बीच में स्थित रोड का तस्वीर है।

और दीवार सफेद रंग की है।

यह कोई शादी में सजाए गए गाड़ी का तस्वीर है।

इस गाड़ी में गेंदे का फूलों का ज्यादा उपयोग किया गया है।

सामने राजू स रंजन संग कुछ लिखा हुआ है।

एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है।

यह कोई तालाब का तस्वीर है।

यहां पे सभी बच्चे लाइन में खड़े हैं।

यहां पे बहुत सारी साड़ियां देखी जा सकती है।

और कुछ बेंच जैसा रखा हुआ है।

यहां पे बहोत बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं।

सामने बोहोत सारे झोले हैं।